यह एक खूबसूरत पार्क है| इसमें बच्चे लोग के लिए झूले लगे हुए है| पुरे बहुत अच्छा ढंग से सजाया गया है| यहाँ पे हर बच्चे लोग आ सकते है घूम सकते हैं खेल सकते हैं।

और यहा देखने मे इतना अच्छा लग रहा है लाइटिंग व्यवस्था भी बहुत अच्छा है।

बोहोत ही अच्छा है| यहा पे पेड़ है पे_पेड़ दिख रहा है| इतना अच्छा साफ सफाई दिख रहा है दिख रहा है यहा पे आराम से अप्प या सक--

जैसे कि आप ये देख सकते हो जो बच्चे लोग पड़ने में जीनियस बच्चे लोग है और जो कि कोई कोचिंग --

ये बोहोत ही खूबसूरत गार्डन है जहा पे लोग घूमने के लिए आ सकते है।